एक दुकान का फोटो है वहां पर देख सकते हो--

ये देख सकते हैं एक छोटासा गली हैं यहां सारे ठेले लगे हुएं हैं।

सामने में गेट बना हुआ है बहुत बड़ा स्कूल है।

अलग-अलग ये सुंदर-सुंदर ड्रेस पहन करके आई हुई हैं सुंदर-सुंदर लड़कियां --

सामने में देख सकते है बहोत बड़े बड़े मकान वगैरा है।

और एक नाला भी बना हुआ देखिए बहुत सारे यहां पर देखिए--

घर वगैरा बनाने के लिए सीमेंट वगैरा--

अं यहां पर आप ईयरफोन वगैरा खरीद सकते हैं।

वगैरा कट रहे हैं।

मकान वगैरा भी है भी लगे हुएं हैं ग्रीन कलर के।

बहुत सारी पीली कलर की मकान हैं ये दो दो मंजिल की ये मकान है देखिए --

तो देख सकते हैं यहां पर पिछे में बहुत सारी मकान वगैरा हैं।